यह एक बहोत सुंदर जिम --

और इस पर सफेद टाइल भी नीचे लग रही है।

यह एक पिच है जो कि इस पिच में दो आदमी चुना डाल रहे हैं।

जो कि कुछ आदमी काम कर रहे है।

जो की इस स्कूल में बहोत से बच्चे बैठे हुए हैं जो की पीली ड्रेस पहे रखी है।

और कुछ आदमी ऊपर जा रहे हैं।